ये कमरा दिखण मा जी मेडिकल स्टोर कर छ लग्यण लग्युं मेडिकल स्टोर थें हिंदी मा जी दवा खानु भी बोल्दा छन यखम अलग अलग जगह पर अलग अलग दवाई छन रखीं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बाटू दिखेणु यखम लोहा का पाइप करन दिखेण लग्यां यख फणा हरयां भर्यां डोखरा कर दिखेणा यख फणा कुछ माकन छन दिखेणा।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हमथे एक बड़ू भारी कु कमरा कर छ दिखेणु यु कमरा देखण मा जी अस्पताल च लगण लगीं।

चित्र का अनुसार यख मा जी हम ते एक बड़ी बारिकी इमारत कर छ दिखेण लगीं यख मा जी ये इमारत दुई मंजिल की छा यू देखणा मा कुई होटल छ लगण लग्युं।

ये इमारत देखणम कोई होटल कर छ लगण लग्युं ये पर कई सारी खिड़की छन दिखेण लगीं।

हरयूं भरयुं डोकरा कर छन दिखेण लग्यां हरयूं भरयुं बिट्टू कर छा यख फण बड़ा बड़ा हरयां भरयां पहाड़ छन पहाड़ का बिच फुण रोड कर छन जाईं यख फणा कई सारा हरयां भरयां डाला कर भी छन।